अ उसमे चेनल गेट लगा हुआ हैं उसके ऊपर एक बड़ा-सा नीला बोर्ड लगा हुआ हैं जिसमे लिखा हुआ हैं वि.सी.एस.एम. --

दिखाई दे रहे हैं इस आदमी ने चेकदार शर्ट पहनी हुई हैं और उसके पैरो में स्लीपर दिखाई दे रही हैं और --

सर बाइक है जो रेड कलर की। इसी के उपर बडा सा पुल है। पुल ऊपर सफेद रंग के बादल दिखाई दे --

सामने अ कई सारी कारें हैं जो सफेद रंग की है। एक तरफ़ बाइक स्कूटी खड़े खड़े हैं और कई सारे लोग भी नज़र आ रहें हैं।

अ लिखा हुआ है अभिजीत कुमार और ये एक दरवाजा है जो टीन का है। एक साइड साइकिल खड़ी हुई हैं ।

रंग में है अ दूसरी तरफ और होर्डिंग लगी हुई है कई सारी।

अ बड़े अक्षरों में वी पॉइंट फिटनेस फैट टू फिट लिखा हुआ है।

अ दिया गया है एक कार खड़ी है जो कवर्ड है ।

पार्कमैन टेलर्स उसमें दो आदमियों की पिक्चर बनी हुई है दूसरी तरफ चौधरी टेक्सटाइल्स लिखा हुआ है।

गणेश जी की मूर्ति रखी गयी है दूसरी तरफ दो औरते खड़ी है और एक आदमी खड़ा है एक औरत ने पीले रंग की साड़ी पेहेन रखी है दुसरे ने हरे --

और कई सारे लोग अ राउंड बनाके खड़े हुए हैं और कई लोग बैठे हुए हैं। कई लोग खड़े हैं।